रूबी में वेरिएबल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे
वेरिएबल क्या है160
रूबी में सक्रिय टाइपिंग
वेरिएबल घोषित करना
वेरिएबल के प्रकार बदलना
वेरिएबल का स्कोप क्या है160
वेरिएबल के प्रकार
यहाँ हम उबंटु लिनक्स वर्जन 1204 रूबी 193 उपयोग कर रहे हैं
इस ट्यूटोरियल के अनुकरण के लिए आपको लिनक्स में टर्मिनल का ज्ञान होना आवश्यक है
आपको आईआरबी की जानकारी होनी आवश्यक है
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गयी हमारी वेबसाइट पर जाएँ
अब मैं समझाउंगी कि वेरिएबल क्या है160
वेरिएबल का उपयोग एक वैल्यू संचित करने के लिए होता है
वेरिएबल एक संदर्भ है जिसे नियुक्त कर सकते हैं
ध्यान दें कि रूबी वेरिएबल्स केस सेंसिटिव हैं
वेरिएबल का नाम अर्थपूर्ण होना चाहिए
अब देखते हैं सक्रीय टाइपिंग क्या है160
रूबी एक सक्रीय टाइप्ड भाषा है
इसका मतलब कि आपको वेरिएबल बनाते समय डेटाटाइप बताने की आवशयकता नहीं है
Rubyइंटरप्रेटर नियत कार्य के समय डेटा टाइप निर्धारित करता है
अब देखते हैं कि रूबी में वेरिएबल कैसे निर्धारित करें
एकसाथ Ctrl Alt और ट कीज़ दबाकर टर्मिनल खोलें
आपके स्क्रीन पर टर्मिनल विंडो प्रदर्शित होती है
अब आईआरबी टाइप करें
इंटरैक्टिव रूबी आरम्भ के लिए एंटर दबाएं
अब टाइप करें वर1 इक्वल टो 10 और एंटर दबाएं
यहाँ हमने एक वेरिएबल वर1 घोषित किया और उसकी वैल्यू 10 निर्धारित की
अब जाँचते हैं कि इंटरप्रेटर द्वारा दिया गया डेटाटाइप इंटीजर है या नहीं
अब टाइप करें वर1 डॉट kind ओएफ question मार्क इंटीजर और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट ट्रू की तरह मिलेगा
रूबी में वेरिएबल टाइप को सक्रियता से बदल सकते हैं
ऐसा करने के लिए इसकी एक नयी वैल्यू निर्धारित करें
इसको वर 1 को एक स्ट्रिंग वैल्यू निर्धारित करके करें
टाइप करें वर1 इक्वल टो डबल कोट्स में हेलो और एंटर दबाएं
निर्धारित वेरिएबल टाइप को सत्यापित करें
टाइप करें वर1 डॉट क्लास क्लास मेथड बताता है कि यह वेरिएबल किस क्लास का है
अब एंटर दबाएं
हमें आउटपुट स्ट्रिंग मिलता है
रूबी ने अपने आप से वेरिएबल टाइप को इन्टिजर से स्ट्रिंग में बदल दिया है
अब हम सीखेंगे कि वेरिएबल वैल्यू को भिन्न प्रकार से कैसे बदलें160
वापस स्लाइड्स पर आएँ
रूबी वेरिएबल क्लासेस में उनकी वैल्यूज को भिन्न प्रकार से बदलने की विधियाँ होती हैं
to i मेथड वेरिएबल को इंटीजर में बदलने के लिए उपयोगी है
टो f मेथड वेरिएबल को फ्लोटिंग पॉइन्ट में बदलने के लिए उपयोगी है
to s मेथड वेरिएबल को स्ट्रिंग में बदलने में उपयोगी है
to s मेथड नंबर बेस को आर्गुमेंट की तरह लेता है
रूपांतरण इस नंबर बेस पर निर्भर करता है
अब इसका अभ्यास करें
टर्मिनल पर जाएँ सबसे पहले टर्मिनल को क्लियर करें
आईआरबी कंसोल को क्लियर करने के लिए ctrl Lदबाएँ
अब टाइप करें य इस इक्वल टो 20 और एंटर दबाएं
यहाँ हम एक वेरिएबल य घोषित करते हैं और उसकी वैल्यू 20 निर्धारित करते हैं
यहाँ हम to f मेथड उपयोग करके य को फ्लोटिंग पॉइन्ट वैल्यू में बदलेंगे
टाइप करें य डॉट to f और एंटर दबाएं
हमें एक फ्लोट की तरह एक वैल्यू मिलती है
टाइप करें य डॉट to s और एंटर दबाएं
हमें डबल कोट्स में आउटपुट 20 मिलता है
वेरिएबल य को बाइनरी फॉर्म में बदलने के लिए to s मेथड में नंबर बेस 2 दें
पिछली कमांड में जाने के लिए अप एरो की दबाएं
टाइप करें ओपनिंग ब्रैकेट 2 क्लोजिंग ब्रैकेट और एंटर दबाएं
हमें बाइनरी फॉर्म में आउटपुट मिलता है
इसी तरह आप वेरिएबल य को ओक्टल और हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी बदल सकते हैं
नंबर बेस को 8 या 16 में बदलकर अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं
अब हम सीखेंगे कि वेरिएबल स्कोप क्या होता है
स्कोप बताता है कि वेरिएबल को प्रोग्राम में कहाँ एक्सेस कर सकते हैं
रूबी के चार तरह के वेरिएबल स्कोप होते हैं160 लोकल ग्लोबल इंस्टैंस और क्लास प्रत्येक वेरिएबल का प्रकार वेरिएबल नाम की शुरुआत में एक स्पेशल करैक्टर के द्वारा बताया जाता है
ग्लोबल वेरिएबल दर्शाता है
लोअर केस लेटर और अंडरस्कोर लोकल वेरिएबल दर्शाता है
इंस्टैंस वेरिएबल दर्शाते है
दो सिंबल क्लास वेरिएबल दर्शाते हैं
अपर केस लेटर्स कांस्टेंट दर्शाता है
इसके बारे में हम विस्तार में अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे
इसके साथ हम स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
इसको सरांशित करते हैं
इस टुटोरिअल में हमने सीखा एक वेरिएबल घोषित करना जैसे वर 1 10 to f to s मेथड्स उपयोग करके वेरिएबल टाइप बदलना
भिन्न वेरिएबल स्कोप नियत कार्य के रूप में एक वेरिएबल घोषित करें और इसको ओक्टल और हेक्साडेसिमल फॉर्म में बदलें
दिए गए लिंक पर उपलब्ध विडिओ को देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सरांशित करता है
अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम160 स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं चलती है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
ज्यादा जानकारी के लिए contactspoken tutorialorg को लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए लिंक पर उपलब्ध है
आई आई टी मुंबई से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद